ये इमेज एक रेलवे स्टेशन की है जहाँ पर सीढ़ीए ऊपर की ओर जाती नजर आ रही हैं।

यहाँ पर खजूर भी रखी दिखाई दे रही है जो कि पेपर न्यूजपेपर्स के टुकड़ो पर रखी दिखाई दे रही है।

ये इमे इस इमेज में बोहत सारे फल फ्रूट्स वगेरा दिखाई दे रहें हैं जैसे की एप्पल अ वाटरमैलोन वगेरा जा ये फल फ्रूट एक ठेले पे रखे हुए हैं।

यहाँ पर एक अ स्विमिंग पूल भी छोटा सा स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा है जो की खाली दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर बहुत सारा समान रखा दिखाई दे रहा है कुछ बास्केट दिख रही है जो कि ब्लू कलर की है कुछ भगोने रखा रखे दिख रहे है और एक कुर्सी भी रखी दिख रही है।